सामने काफी सारे हरे भरे पेड़ नज़र आ रहे हैं।

गेट के पास एक आदमी सफेद रंग के कपड़े पहने हुए खड़ा नजर आ रहा है।

तीन लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

ब्लैक कलर की ग्रील दीवार के साथ लगी हुई नज़र आ रही है।

के नीचे एक बोरा भी नज़र आ रहा है जो की सफेद रंग का है।

कुछ लोग यहां पर टहेलते हुए नजर आ रहे--

यही साथ में सफेद रंग की एक दीवार नजर आ रही है।

चार्जर भी रखा हुआ नजर आ रहा है कुर्सी के पीछे काफी सुंदर फूल दिखाई दे र--

यहां पर एक बाइक भी खड़ी हुई--

राइट साइड में गणेश जी की मूर्ति नजर आ रही है।

इस चित्र में एक खेलने का ग्राउंड नजर आ रहा है यहां पर ग्राउंड में काफी सारे लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पौधा और उसके फूल भी नजर आ रहे हैं सामने व्हाइट रंग की एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है काफी हरियाली भरा गार्डन है।

यहां पर एक काले रंग की दो पहिया वाहन भी नजर आ रही है।

व्हाइट रंग के ऊपर आसमान भी दिख रहे हैं।

हमें यहां पर काफी सारे फोर भी नजर आ रहे हैं।

गमले का रंग लाल कलर का है।